इस फोटो में मुझे भगवान की बहोत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे मोर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे रोड दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो मे मुझे टेबल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गुटके के पाउच दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे प्लास्टिक के बहोत सारे ये समान दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी झाड़ू दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।